सामने की और में किनारे बने हुए है किनारे में गिट्टी डाली हुए है काफी छोटी-छोटी घांसी भी उगी हुई है यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है और रेलिंग बनाई गयी है जो कि सीमेंटेड है जो लोग है वो दौड़ रहे है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और बहुत सारी भीड़ इखट्टी है देखने पर लग रहा है की यहाँ पे कोई प्रवचन चल रहे थे तो इखट्टी भीड़ आई हुई है।

यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल काफी गहरा है देखने पर लग रहा है यहा पे एक घिसल पट्टी बनाई गई है पीला कलर और हरा कलर किया गया और एक लाल कलर की--

टेबल है टेबल जो है काफी बड़ी है और देखने पर लग रहा हे इसमे बुनाई की गई है इसमे कलर जो है. लाल कलर पीला कलर और सफेद कलर किया गया है टेबल के ऊपर एक प्लेट रखी गई है जो की काले कलर की है।